मूर्ति खड़ी दिखाई दे रहे है यहाँ पर गुंडस्थाली सभयी दिखाई दे रहा है एक आदमी पूजा कर रहा है।

बच्चे शोर मचा रहे है खड़े हैं।

बहुत सारा मेदान दिखाई दे रहा है बहुत सारा पानी भरो दिखाई दे रहा है।

अच्छों-अच्छा लग रहा है अच्छे - अच्छे लोहे के खमंदरेय है पेंटिंग बनी दिखाई दे रही है।